एक घोड़ा दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक आदमी बैठा है तलवार के साथ।

गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है और अंबेडकर जी का पोस्टर लगा हुआ है।

उसके ऊपर कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त ललितपुर श्रम विभाग --